वहां पर दो तीन टब भी रखें है जिसमें वो खाना खाते हैं और चारों तरफ से पार्क को घेर दिया गया है।

एवं वहां पर बहोत बड़े बड़े पत्थर के चट्टाने हैं।

एवं दोनों साइड से लाल रंग की कपरा है और एक टेबल है और लाल रंग की कुर्सी भी है।

इसकी स्थापना उन्नीस सौ छियालिस में हुई है एवं गेट है जो लोहे की है और जो बिल्डिंग है बहोत पुरानी है।

और इसमें बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं।

उसमें बहोत सारे छोटे छोटे हरी हरी घास भी है।

जो कि पीले रंग की है और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और पार्क में बच्चे बूढ़े सब खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक बहोत बड़ी होटल हैं होटल पार्क एंड फैमिली रेस्टोरेंट --

एवं उसका बॉटल्स भी है और वहां पर बहोत सारे रैक्स में समान रखी गई है।